यहाँ पर कोई लड़का- लड़की फोटो खिंचवा रहे हैं जहाँ पर बहोत अच्छी सी सजावट हुई है नीचे का फर्श बहोत गंदा लग रहा--

यहाँ पर बहोत बिंदास टेंट गड़ा हुआ है यहाँ पर एक लड़का एक लड़की फोटो खींचवा रहे है एक लड़की फिर से फोटो उचिया रही ऐ जहाँ पर दो लड़का अपने दाँत काढ़े हुए दिखाई दे रहे --

यहाँ पर अपने फूलों से सजावट हुई है यहाँ पर रंग-बिरंगी पर्दायें बनी हुई है।